बीच ग्राउंड में ढेर सारी ग्रासेस है जो कि अच्छे से कट कर के वेल मेंटेंन हुई हैं।

ये किसी ऑटोमोबाइल के सामने का सीन लग रहा है।

ये किसी एक ट्रेडिशनल डांस का सीन लग रहा है।

जहां पे बीच में एक ट्रेन है जोसका इंजन ग्रीन कलर का है।

यह जोकि बहोत ही फेमस लाइब्रेरी है।

साथ में पेड़ पौधे ऊपर दो स्ट्रीट लाइट औ पीछे तीन बाइके औ व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है औ--

ये एक बस स्टैंड लग रहा है जो की रात के समय का है।

और बीच में गार्डन है जिसमें पेड़ पौधे बहोत ही अच्छे तरीके से सजा के लगे हुए हैं।

जिसमें शीशे के बॉक्सेस हैं बॉक्सेस के अंदर ढेर सारी मिठाइयां रखी हुई हैं पीछे--

आस पास ढेर सारी बिल्डिंगें और मार्केट्स है और लाइटे जल रहींगा।

साथ साथ एक्सिस बैंक का ए_टी_एम दिख रहा है और बैंक ऑफ़ इंडिया का भी।

ये किसी मंदिर का सीन लग रहा है।

कुछ लोग भीड़ की तरफ कुछ लोग बिल्डिंग के अन्दर खड़े हुए हैं और बगल में मन्दिर है।

यह एक डी_जे सिस्टम लग रहा है जिसमें नाम लिखा है शर्मा ऑडियो ।

प्लास्टिक्स के ढेर सारे बकेट रखे हुए हैं।

सीलिंग फैन लगा हुआ है व्हाइट कलर की लाइ--

जिसमें से एक ने येलो कलर की शर्ट पेहनी हुई है एक ने डार्क ग्रे कलर की शर्ट पेहनी हुई है।

ये किसी एक रास्ते का सीन लग रहा हैं जिसमे आस पास ढेर सारे बिल्डिंग्स है।

दूर बी बीच में ब्लू कलर का डस्टबिन है। सामने रेड कलर की बिल्डिंग है। ब --

ये एक जू का सीनरी लग रही है।

ये किसी रेस्टोरेंट या कैफे का सीन लग--

और बगल में उनकी खुद की दूसरी लैंग्वेज है।

जो की गोमती नगर में हैं।

ये किसी एक ग्राउंड का सीन लग रहा--

दूर छोटी छोटी लंबी सी बिल्डिंग्स है।

और बीच में छोटे छोटे बैरिकेट्स लगाए रखे हुए हैं और ढेर सारे बोर्ड्स हैं और एक पिलर भी दिख रहा है।